रोड का दृश्य है।

सामने बाटा का शोरूम नजर आ रहा --

यह किसी पहाड़ी का दृश्य नज़र आ रहा है जहाँ पे दूर एक घर दिख रहा है और बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं।

एक चाय का कप है इस पे नेस कैफे लिखा हुआ है।

और यहां से चिट्ठियां डालने के बाद डाक विभाग के कर्मचारी चिट्ठियों को ले जाकर --

और उसकी दुरी को नाप रहे --

यह किसी जीम का दृश्य है।

और वो किसी बात को चियर्स कर रहा है।

साथ में पक्का घाट भी बना है।

देखने से ये कोई मार्बल का गोदाम लग रहा है।

यहां पे केक रखा हुआ है।

बर्थडे है बर्थडे टेबल लाल गुलाब ब ब --